यहाँ दिख अ एक फल की दुकान लग रही है। जिसमें काफी सारे सेब संतरे और बहुत सारे जो की फल रखे हुए है जैसे की --

यह एक का शोरूम या फिर कॉफी दूसरी चीजों का शोरूम लग रहा है जिसमे एक सामने कि तरफ एक आदमी सोफ़े पे बैठा हुआ है ।

और ऊपर की ओर टिन पड़ी हुई है। जिसमें एक नीचे की तरफ एंगल गड़ा हुआ है। टिन जो है। टिन के ऊपर से कुछ पेड़ दिखाई पर रहें हैं और बहोत सारी साइकिले खड़ी हुईं हैं। कुछ पिंक --

बहुत सारे माले की डोरें दिखाईं पड़ रहीं हैं। बहुत सारा पानी दूर से दिखाई पड़ रहा है। पानी के अंदर काफी सारी लाइटों की परछाई दिखाई पड़ रही है और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा --

यह देखने में बॉल वाला है खेलने वाला जिसमे स्लाइड करके मारी जातीं हैं बॉलों को और बॉल जो हैं फिल हो जातें हैं यह तीन दुनि छेह पैर का होता है |

कुछ स्कूल ऐसा कुछ घर ऐसा दिखाई पड़ रहा है और बैलगाड़ियों पर बहुत सारा समान लदा हुआ खड़ा है।

और कुछ दौड़ रहे हैं। देखने में एक रास्ते पे आदमी जाता हुआ दिख रहा है। पीछे साइड मे बहोत सारे पेड़-पौधे हैं। यहाँ ग्राउंड मे घाँस हरी-हरी है।

कुछ लकड़ी से बना हुआ है और बगल में एक पूरी लकड़ी का बना हुआ काउंटर भी रखा है और कुछ पोस्टर कुछ डिब्बे सामने की और लगे हुए हैं जो देखने में सुंदर ल --

कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं और कुछ अम्ब्रेला छपे हुए हैं और इसमें काफी दूर से --